गेट दिखाई दे रहा है गेट का रंग नीला नज़र आ रहा है वो लोहे का है।

और लाइटे दिखाई दे रही है लाइट का रंग सफेद नज़र आ रहा है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है झंडे नज़र आ रहे है जिनका रंग--

का रंग पर्पल नजर आ रहा है नीचे जमीन पर एक लाल और काले रंग का फर्श दिखाई --

दे रहा है एक हरे रंग का फर्श नजर आ रहा है।

यहाँ एक ट्रेन दिखाई दे रही है ट्रेन का रंग नीला नजर आ रहा है पटरी दिखाई दे रही है उसके पीछे --

नहीं है बेंच दिखाई दे रही है बेंच लोहे की नज़र आ रही है जिनका रंग काला दिखाई दे रहा है एक मैडम --